इमेज में हरा-भरा गार्डन दिख रहा है झाड़ दिख रहे हैं ग्रीन कलर के एक सीमेंट कलर का रस्ता दिख रहा है।

इस इमेज में एक लड़का दिख रहा है जिसने पर्पल कलर की टी-शर्ट और सन ग्लासेज लगाया हुए है। एक बहोत बड़ा --

एक लड़का कटिंग काट रहा है जिसने ब्लू कलर की चादर ओढ़ी हुई है एक पानी पीने की बॉटल दिख रही है माजा लिखा हुआ है।

लेडीज दिख रही है जो की नीले कलर के कपड़े में एक लेडीज साड़ी में है जो की वाइट कलर की उसके शोल्डर पे हैंड बैग टंगा हुआ है।